यह एक सेल्फी पॉइंट दरवाजे जैसा लग रहा है।

एक लाल कलर का पेड़ लगा है और आस-पास हरे कलर के पेड़ लगे हैं और दो टंकियाँ भी रखी हैं इसके सामने बड़ी मार्केट सी दिख रही है।

और यह दीवाल बन रही है। पिलर भी उठ रहे हैं।

यह एक आधार बैंक है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा बैंक ऑफ़ बड़ोदा यहाँ बैंक खाता खुलता है। पैसा जमाने निका निकावाशी होती है। किसी भी बैंक खाते में।

यह एक कुंड की फोटो है इसमें वा इसके पास इसके बीच में एक नदी है और अगल बगल बहुत बड़े बड़े पत्थर डले हुए हैं।

यह एक बड़ी सी कंपनी है। जहाँ पर जो टीन से बनी है। इधर पे सिमेन्ट पत्थरों में से लोहे लँगड़ का --

यह एक मैन्यफैक्चरिंग मशीन हैं जहां पर दूध या किसी आटे-आटे कि ही मैन्यफैक्चरिंग होती है। इस मशीन में बड़े-बड़े --